यहाँ पे एक रिख्शा है रिक्शे के ऊपर बहुत बड़ी सी मछली है जोकि डोल्फिन जैसा लग रही है और यहाँ पे कमेरा भी है औरयहाँ पे बहुत सारे --